और उसपे एक रास्ता भी दिखाई दे रहा है और कुछ दूर में एक बोट भी दिखाई दे रहा है जो की ऑरेंज कलर की है और एक ब्लू कलर की भी बोट दिखाई दे रही है।

उसके बगल में एक छोटी-सी वाइट कलर की बाल्टी भी नजर आ रही है और कुछ मछलियां इसमें कटी हुवी भी दिखाई दे रही है।

सड़क कच्ची सड़क के बगल में बहोत सारे मकान भी बने हुऐं --

और इसमें एक ब्लैक कलर की भी पट्टियाँ दिखाई दे रही हैं और आगे में ब्लू कलर का भी दिखाई दे रहा है और पीछे दीवार में व्हाइट कलर का भी पेंट किया गया --

सलून के बाहर तीन कुर्सियाँ नजर आ रही हैं जिसपे लोग बैठे हुए हैं और एक लोग खड़ा है जो की व्हाइट कलर के टी-शर्ट में है और उसके नीचे एक तीन सीढ़ियाँ भी नजर आ रही --

प्लेट का कलर ब्लैक है और प्लेट के अंदर एक पनीर का टुकड़ा दिख रहा है प्याज दिख रहा है कुछ और भी हरे पत्ते की दिख रहे है और फर्श पर व्हाइट कलर का टेबल दिख रहा है।

कुछ छोटे कुछ बड़े और उससे से भी बड़े पहाड़ पे बहुत सारे हरे-भरे पेड़ पत्ते भी नजर आ रहे हैं और नारियल की भी पेड़ भी नजर आ रही है।

इस तस्वीर में हरे एक मैदान दिख रहा है जो की घास से भरा हुआ है उसमें एक काले कलर का तार बिंदु नजर आते हुए दिख रहा है।

और खेत के बहोत दूर में एक बडा सा मकान दिखाई दे रहा है जो की वाइट कलर की नजर आ रही है।

इस तस्वीर में एक बड़ा-सा ब्लैक कलर का बोर्ड दिख रहा है जिसमें व लाइटें जल रही है और उसमें --

नीचे फर्श पे हरे कलर का भी दिखाई दे रहा है और ठीक बगल में एक बो व्हाइट कलर का बोरा भी दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक प्रतिमा नजर आ रही है जो की पत्थर में बनी हुइ है और इसमें एक बड़ी प्रतिमा है और नीचे में बहुत सारी --